ओमें बच्‍चा सब खेल रहे है बहुत-बहुत एमे पंडाल लागल है एमे बच्‍चा सब है।

ओई में बहोत बड़ी भारी हवे ओई में सब कुछ लागल ह। खिड़की ह केवाड़ी ह।

विशाल एगो मॉल है। उमे कपड़ा सब बिकाता है।

प्लेट सब धेएल हैं उज्जर-उज्जर प्लेट हैं प्लेट में बिरयानी सब हैं।